इस फोटो में काफी लोग अह सुबह योगा करने के लिए प्रयास कर रहे है सब लोग अह मिल जुलके योगा कर रहे है।

बेचने के लिए काफी प्रकार के फल नजर आ रहे हैं संतरा अनार सेब केला यहां पर और काफी फ्रेश नजर आ रहे हैं।

और छे बिंदु बनी हुई है और गेट के कॉर्नर कार्नर में डिज़ाइनए भी बनी हुई है और साथ ही में नीचे उतरने के लिए छोटा सा पैसेज भी बना हुआ है।

और सामने देखे तो एक काला कलर का तिल बना हुआ है और कुछ लोग चेयर पर बेठे हुए हैं ओर कुछ लोग स्टेज पे चड़े हुए हैं

कलर सफ़ेद है और इनके बगल में इनके अगल बगल में एक पिंक कलर की टोकरी भी रखी हुई है जिसमें की ये लोग पानी वगेरा पी सकते है।

साथी मे यहा पे बड़े बड़े गुलदस्ते भी रहे हुए हे दोनों साइड पे ओर एक नीला कलर का ड्रम देखने को मिल रहा है ।

काफी खुश नज़र आ रहे है और सामने एक बार्बर छोटे बच्चे के बाल काट रहा हैजिस कुर्सी पे बेढ़ा हुआ हे काफी वो मुलायम नजर आ रही है और एक पीछे लड़का पीली कलर की टीशर्ट पहन के भी बैठा हुआ हैबाल कटाने के लिए।

यहाँ पे सब एक शांति से बैठके देख रहे हैऔर स्पीकर भी दीवार पे लगे नजर आ रहे हैमुझे काले कलर के--

यह एक रासते मे पुल के नीचे की फोटो है इस फोटो मे एक पुल दिखाई पड़ रहा है ओर ऑटो खड़ी है ऑटो का रंग पीला ओर काला अंदर का है और एक--

एक सैलून की फोटो है जहां जहां पर एक आदमी अपने टैबलेट से अपने कस्टमर की फोटो खींच रहा है।

इस फोटो में एक लोहे का पकड़ टाइप का है जोकि बोट को रोकने के काम आता है और पीछे बोट भी नज़र आ रही है नदी में!

और एक एक लड़का उसको रस्सी से पकडे हुई है जिसने हरा कलर का चश्मः लगाया हुआ है और ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई हैं।